हरे रंग का सेड डाला हुआ है पीछे हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बोहत सारे व्यक्ति दिख रहे है पीछे विद्यार्थी दिख रहे है दो टीचर दिखाई दे रहे है बीचमे एक मशीन रखी हुई है टीचर इन सबको उसमे कुछ सुखा-सीखा रहे है बोहत बड़ा अअअ बहुत बड़ी जगह---